और यहाँ पर ये खूब पड़े पेड़ हैं और यहाँ बीच में तालाब है।

यह है। जोकि और यहा पर ये हैं की --

है और यहाँ पर एक मदरसा है जिसमे की हम देख रहे है एक माशाल्लाह --

यहाँ पर काफी बलून्स लगे हुए हैं और बलून्स का कलर ऑरेंज और सफ़ेद है।